यहाँ गाड़ी गुड़ी रिपेयर किये जाते हैं उसके बगल में दो मंजिला मकान है ।

कच्चे-पस्ते भी होंगे गाड़ियाँ लगी हैं ।

जो बैठे हुए हैं दो खड़े हैं बांस है सरिया है सीमेंट है बाल्टी है रेता है बजरी दिखाई दे रहा है ।

झंडा लगा हुआ है चारों तरफ पेड़ हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं तीन-चार लोग इधर हैं उस साइड भी पानी दूर-दूर तक नजर आ रहा है ।